ये रात का समय हो रहा है इसमें चारों तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं जिसमें बीच में एक घंटाघर बना हुआ है जो जिसमें से सीढ़ी लगी हुई है इसमें एक वॉच भी बनी हुई है सड़क भी है सड़क पर बहुत सारे लोग-बाग़ चल-फिर कर रहे हैं।